निचे में कुछ गाड़ी खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं प पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं दिन का समय हैं आसमान दिखाई दे रहा हैं बगल में भी एक बडीसी बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं सीडी दिखाई दे रहा हैं।

पीछे मे मछली मार्केट दिखाई दे रही है जहा कुछ मछलिया दिखाई दे रही है कैरट रखे हुए दिखाई दे रहे है बहुत से लोग भी दिखाई दे रहे है बहुत से मछलिया दिखाई दे रही --

एक कपडा दिखाई दे रहा है गर्ल्स वियर दिखाई दे रहा है हँगर दिखाई दे रहा है रात का समय लग रहा है टेबल कुर्सी दिखाई दे रहे है और पीछे बहुत सारे कपडे दिखाई दे रहे है।

दिखाई दे रहाय और यहाँ पे सामने में बहोत सारे वस्तूऐ रखी हुई है झूला रखा हुआ है यहाँ पौंधे दिखाई दे रहे गार्डन दिखाई दे रहाय और दिन का समय है धूप दिखाई दे रहा है।

और मूर्ति बनी हुई दिखाई दे रही काली पत्थर दिखाई दे रहा हैं।